नीचे एक मैदान है चारों तरफ सफेद कलर की बाउंड्री बनी हुई है।

नीचे मिट्टी का मैदान है इसमें हरी-हरी घास उग रही है कहीं --

कुछ सफेद है कुछ ऑरेंज है।

एक स्टूल रखा है ऑरेंज कलर का।

तस्वीर में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जो कि पुराने जमाने की बनी हुई है।

अब तस्वीर में हम देख पा रहे हैं --

कुर्सी और एक बच्चा बैठा हुआ है।

सामने बहुत सारे पुरुष और महिलाएं आते-जाते दिखाई दे रहे हैं।

लड़के ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है।

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है --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

यहां पर हमें एक टीन शेड से बना हुआ शोरूम दिखाई दे रहा है।

जो कि फिरोजी कलर का है सामने एक शटर लगा है।

दो क्वालिटी ट्रस्ट सर्विस स्लाइस उन्नीस सौ साठ लिखा हुआ है।

और दूसरी दुकान पर वोट लगा है।

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है।

सामने हमें एक घर दिखाई दे रहा है जिसमें सामने --

कहीं मैदान में घास लगी है।

सामने एक तंबू लगा है।

कुछ छोटी कुछ बड़ी और कुछ बहुत बड़ी मछलियां रखी है।

सामने दो महिलाएं बैठी हैं।

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है --

और दूसरा व्यक्ति उसकी कटिंग कर रहा है जिस --

चारों तरफ दूर-दूर तक मैदान है कहीं घास और कहीं --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

और सामने हमारे बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं।

मैदान है मैदान में कहीं फूल लगे हुए हैं कहीं पेड़ --

जिस पर एक सिस्टम रखा हुआ है।

सामने एक दरवाजा दिखाई दे रहा है सामने कुछ एक पुरुष खड़े हुए हैं।

हाथ में एक बुक रखे हुए हैं।

यहां पर हमें एक अ अम चबूतरा बना हुआ दिखाई दे रहा है जो की एक चर्च है।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

अंदर एक के कांच का गेट लगा है सामने एक कार --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

इसमें बहुत सारे पुरुष महिलाएं दिखाई दे रहे हैं।

इसमें आगे हमारा तिरंगा झंडा लगा हुआ है।

सड़क के किनारो पर स्ट्रीट लाइट लगी है।

तस्वीर में हम देख पा रहे हैं --

दो व्यक्ति खड़े हुए एक व्यक्ति खड़े हुए हैं।

जो एक्सरसाइज कर रहे हैं सामने में आए --

सामने ऑटोरिक्शा दिखाई दे रहा है और बहुत सारी कार है।

चारों तरफ दीवार उठी है मॉल का कलर म पी --

में बहुत सारी गाड़ी खड़ी हैं।

ऊपर एक टावर दिखाई दे रहा है और नीचे --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

और चारों तरफ बड़ी-बड़ी पहाड़ियां दिखाई दे रही है।